और दुकान का अंदर सारा सामान रख के दिखाई दे रहा है लाइट भी पूरा जल के दिखाई दे रहा है।

बार्बर का अंदर बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमको घर बन घर दिखाई दे रहा है टीना से बनाया हुआ वाला।

इस फोटो में बहोत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

सारा जंगल को भी दिखाई दे रहा है।

हमें बेड़ा की ग्रिल येलो मिक्स वाला भी बना के दिखाई दे रहा है।

गेट भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

को ये तस्वीर मे एक घर दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

ये फोटो में हमको चार आदमी दिखाई दे रहा है।

ज्यादा बड़ा बड़ा पेर लोग भी दिखाई दे रहा हैं।

में बहोत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुट्टू पट्टा का एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।

और नाव का ऊपर बहोत सारा आदमी बैठके भी दिखाई दे रहा है।

टू वाइट गुलाबी खोल के रख के दिखाई दे रहा है।